और कुछ मकान ईंटो से बने हुए हैं।

और एक मेज भी पड़ी हुई है।

और एक मोटरसाइकल पर एक व्यक्ति भी जा रहा है।

दुकान में शीशे के गेट भी लगे हुए हैं।

एक लकड़ी का गेट भी है।

गले में लाल रंग के मोफलर भी डाल रखे हैं।

गेट पर एक नीले रंग की प्लेट लगी हुई है।

पीले रंग के पपीते भी रखें हुए हैं।

हरे रंग के तरबूज भी रखें हैं।

यह फोटो एक दुकान का है।

उस अलमारी में बहोत सारा सामान भी रखा हुआ है।

लोहे की ग्रिल भी लगी हुई है।

एक डब्बा भी रखा हुआ है।

एक लाल रंग का गेट भी है।